तथा उसके पीछे एक व्यक्ति पैसा निकाल के जा रहा है।

उसके नीचे एक ए_सी लगा हुआ घर दिखाई दे रहा है।

इस वाटर पार्क में कई प्रकार की स्लाइडिंग लगी हुई है।

तथा यहां पर एक आदमी है जो की नीली रंग की टी शर्ट पहनी हुई हैं।